बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

रंग बिरंगे लाइट जल रही है।

फर्स पर रस्सी रखी हुई है।

बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है।

दो व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

यह एक जंगल का दृश्य है।

पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

ये एक मंडप को फूलों से सजाई गई है।

एक मंडप के आसपास बहुत सारे व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

यह एक दुकान का दृश्य है।

दुकान में बहुत सारे रेक बने हुई है।

बहुत सारी बिल्डिंगिया नजर आ रही है।

एयरोप्लेन में इंडिगो लिखा हुआ है।

ऊपर में वेलकम लिखा हुआ है।

बाइक एवं साइकल खड़ी है।

लाल तथा ग्रीन रंग की कालीन बिछाई हुई है।

बहुत सारे व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

सोलर प्लेट दिखाई दे रही है।

यह एक गाड़ी का दुकान है।

झंडे हैं बिजली की तार खींचा हुआ है लाइट जल रही है।

रैंक में फोनपे का स्टीकर लगी हुई है।